यूनिवर्सिटी के बाहर रोड पे तीन चार बच्चे झंडा लेके चल रहे हैं।

एक बाइक वाला दिख रहा है।

और दो तीन कुर्सी इधर पड़ी हुई है।

और वे पेड़ दिख रहा है महान सा दिख रहा हल्का सा कोट्टा सा--

एक यहां पर मोटरसाइकिलों की दुकान है शोरूम जो शोरूम

घड़ी वॉच सभी बहुत ही प्रकार कि सुराइयां धरी हुई है और भी बहुत ही अच्छा अच्छा सामान धरा हुआ है।

और बहोत ही अच्छी दुकान है ये यहां पर लाल फूल से भी धरे हुए हैं गमले रखे हैं।

इधर पन्नी भी धरी है और एक काउंटर के एक गद्दे भी पड़ा हुआ है।

यह रोड की दीवार भी दिख रही है खम्भे पे पोस्टर लगा हुआ है इधर भी एक दीवार पोस्टर लग रहा है।

व एक गुब्बारों से टेडी बियर से बना है उस पे हैप्पी बर्थडे लिख रहा है।

एक पिलर भी दिख रहा है मूर्ति दिख रही है दो तीन आदमी उधर खड़े है पान सात आदमी इधर खड़े है एक औरत भी बैठी है।

ये नील सा हो रहा है अंदर भी सा हो रहा है।

ये ये बाइक के नीचे हैं ये वे बहुत सारी दुकानें हैं यहां पर और रोड भी है साइकिल भी खड़ी है एक पौधा भी--

एक ऊपर ढोलक दो ढोलक धरे हैं एक इधर ढोलक धरा हुआ है एक जे गिट्टार से का पोस्टर लग रहा है।

बाइक पे जा रहे हैं एक दो तीन इधर खड़े हैं एक रहा है।

ये पेड़ पौधे लगे हुए है पीछे बहोत ही पीछे लग रहे--

एक मेज लगी हुई है बिहा शादी की और उसपे माला गिरती है ओ बढ़िया सजावट हो रही है।

केबल भी जा रहा है और हरा सा घास भी एक नीचे बोर्ड धरा है।

नीचे उसके मैट बिछ रहा है और भी समान धरा हुआ है।

ये हलवाई की दुकान है और इसमें रसगुल्ले मिठाई तथा गाजर बा का हलवा बेसन के लड्डू भी धरे हैं धरा है एक फ्रिज धरा हुआ है।

ये बहोत ही अच्छे ठंडे रैंक में समान ला--

यहां पर एक मेला लगा हुआ है और यहां पर बहोत सारे झूले लग रहे हैं।

ऊपर टिन भी है और ऊपर लाइट लूइट भी लग रही है एक आदमी उधर खड़ा है नए नए डिब्बे धरे हैं पैकिंग हुई।

एक पे पन्नी चढ़ रही है एक पे औऱ पे नही चढ़ रही औऱ भी सामान धरा हुआ है।

एक टेशन दिख रहा है फाटक दिख रही है और पीछे एक मकान दिख रहा है एक वो आदमी पानी पी रहा है।

यहां पर बहुत ही अच्छी दुकान सी है एक उसमें नीला पीला सब कुछ बनना है

टैल पे चमक मार रही है टैल में भी और भी मूर्ति ऊर्ती सी धरी है।

यहां के फौजी ने ट्रेनिंग दे रहे हैं और जय हिंद बोल रहे हैं और--